फील्ड में बच्चे लोग और जानवरकुत्ता और गाछीवृक्ष भी है देखने में हमे बहुत अच्छा लगता है और यहां लेन-तेन भी ह--

यहाँ ट्रैक्टर लगी हुई है बाइक लगी हुई है यहाँ लाइन बहुत है।

और बीजली है और यहां देखने में अच्छा भी लगता है सुंदर।

घर भी है और बीच मे झरना भी है। यहां आदमी भी बहुत हैं।

और यहाँ जीप लगी हुई है साइड में नदी भी है और यहाँ नदी के साइड में गाछी वृक्ष हैं देखने में बहुत सुंदर है।

छोटा सा मंदिर है और साइड में डस्टबीन और है और यहाँ गिटी इटा है और यहाँ गाछी वृक्ष है हमें देखने में बहुत अच्छे लगते है और यहाँ लाल- टेन है।

यहाँ हमको देखने को मिल रहा है एक दुकान। दुकान के अंदर रिंग है बैग है और यहाँ बिस्कुट भुजिआ बहुत सामान है और यहाँ कंटर द्वारा पेन तेन--

यहाँ साइड में गाछी-वृझ हाय और यहाँ शायद कॉपी किताब हैय और चप्पल भी है।

और चित्त - कार उठी हुई है ह्य्द्रौल पर और साइड में टीना टीना है डेक्स भी रखी हुई है।